और सभी लोग शादी हो रहा है ।

और नदी किनारे पानी भरा हुआ हैं।

इसमें चारों पटी फटी से घिरा हुआ हैं है सगवान के और बेर के शम के पेड़ हैं यहां नया स्टूडेंट बहुत सारे रहते हैं स्टूडेंट पढ़ते हैं। पेहेने में अच्छा हैं।

इसमें हरा-भरा है हरियाली है पेड़-पौधे उसमें सौ गुलाइकन हैं।

आ ऊ-ऊ खा के और मुँह कान धो के खेल रहे हैं ।

पुजारी लोग बहुत खड़े हैं पूजा कर रहे हैं और सुंदर गेट लगा हुआ हैं।